रेड और अ के बलून्स से डेकोरेट किया हुआ है और बोहोत सारे लोग है एक लड़की ने ने नीले कलर की टी-शर्ट पेहेनी है।